इस तस्वीर में मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट देख सकती हूं।

जो कि सफेद रंग की है और सब पिंजरे में बंद है।

इस फूल पौधों के आगे एक लाल कलर की चेयर भी देख सकती हूं।

की सूखे पत्तो से बना हुआ है।

पीछे बहोत सारी सफेद कुर्सियां भी दिख रही है।

इस तस्वीर में किसी पार्टी या शादी की एंटरेंस दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में एक झोपड़ा दिखाई दे रहा है।

एक टेबल और चेयर भी दिखाई दे रही है साथ में दो लाल रंग की स्टूल भी दिख रही है।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

मुझे रास्ते पर एक इंसान साइकल चलाते हुए दिखाई दे रही है।